सकते हो कि एक मेडिकल स्टोर है ये मेडिकल स्टोर में हम देखोगे कि--

आजू बाजू लेंस लगे हैं बाइक उसके पीछे भी बाइक लगी हुई हैं आजू बाजू फिर लगी है बाइक ।

एक छाया हैं पेड़ के नीचे छाया हैं सामने देखोगे की तालाब के सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ हैं।

देख सकते हो कि टॉय की दुकान है जहां आजू बाजू बहुत सारे टॉय रखे हुए है ट्रेक टॉय है जो लटके हुए है।

आसमा और पेड़ तो बहोत खूबसूरती है ऐसा नेचर है।

देख सकते हो एक मंदिर है ये मंदिर सामने पत बंड़ है पट बंद है।

एक व्यक्ति कार वास कर रहा है खड़ी है कर उसके बाजू में नया मेडिकल --

रनिंग कर रहे हैं ऑफ कोर्स देखो कि एक पैर भी लगा हुआ है उसके पीछे भी जंगल --

देख सकते हो कि एक पेट्रोल पंप है ये पेट्रोल पंप के बाज़ू में दो ट्रक रखे हुए हैं माल वाले उसके सामने एक लड़का है।

यहां देखोगे कि काउंटर में अह अलमारियों में बहुत सारी दवाईयां स--

देखते हैं कि देखो एक चाय का कैफ़े है चाय कैफ़े में देखो एक उम्म गत्ते कलर का पुता हुआ है कुर्सियां लगी हुई हैं।

सीढ़ियां गईं हैं। हरे कलर की कार्पेट है हरे कलर का सामने एक कार खड़ी हुई है।

देखो गोल सा लगा हुआ फूल माला हुआ बहुत प्यारा है देखो गमले हैं ये गमले।

देखो की एक ये एक एक सजावट है पार्टी है जिसमें कुर्सियां लगी हुई है लाइन से कुर्सीयाँ लगी हुई है आजू बाजू में टेंट लगा हुआ है ऊपर देखो की--

देख सकते हो कि एक घर है घर के सामने पोस्ट ऑफिस है पोस्ट ऑफिस का दो तीन बाइक खरी है एक साइकिल खरी हुई है।

फर्नीचर की दुकान है सोफा रखा है सोफा सेट रखा हुआ कुर्सियां रखी हैं अलमारियां रखी है बगट र कबर्ड रखा हुआ है।

पलंग्स हैं देखो बहोत प्रकार के सामान हैं आजू बाजू देखोगे की बहोत बारा समान है भाई अच्छा है।